बेड के ऊपर दो कंबल है एक बेडशिट भी है।

वहीं पे एक आदमी खड़ा है।

यह एक लकड़ी का बना हुआ सोफा है।

टेबल में फेविकोल रखा हुआ है।

दवाई रखने के लिए बहुत सारे रैक बने हुए हैं।

गाड़ी का खुला हुआ है।